यहां पर कुछ स्टेशनरी का सामान रखा है। एक स्टोर है। स्टेशनरी स्टोर है इसमें कुछ स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है।

इस पे कुछ फोटोस वगैरह सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं। एक घड़ी लगी हुई है और कुछ फोटोस लगे हैं।

यहां पर एक नदी है और नदी में से एक अ ब्रिज बना हुआ है।

यहां पर एक चर्च है और चर्च जो की व्हाइट कलर की चर्च है।

सामने एक थाली रखी हुई है जिसमें कुछ पैसे रखें हुए हैं थाली में। एक लेडी है उनका हाथ --